इस दीवार के बगल में एक और दीवाल है जो कि अभी तक पलस्तरा नहीं किया हुआ है।

जैसे कि अनार संतरा केला इत्यादि।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

एक छोटा सा दीर्खा भी बनाया हुआ है।

यहां पर एक व्यक्ति भी बैठा हुआ है जो रेड कलर का शर्ट और ब्लैक कलर का हाफ स्वेटर पहना हुआ।

के ऊपर में ढेर सारा बैग रखा हुआ है।

उसके ऊपर श्याम कुमार दीपुअर गढ़वा लिखा हुआ है।

इस रूम में एक आईना भी लगाया हुआ है।

बिल्डिंग के बाहर में बहुत सारे लोग हैं।

इसमें वटींलेटर भी लगाया हुआ है।

इस झील के किनारे किनारे में पानी है।

इस ग्राउंड के चारों तरफ में बाउंड्री किया हुआ है।

किनारे किनारे में पोल बांधा हुआ है।

घर के बाहर में एक रूम है जिसकी दीवार की कलर स्काई है और नीचे में पलस्तरा किया हुआ है।

दोनों बेड पर पेशेंट लेटे हुए हैं।

व्यक्ति है जो की डार्क ग्रीन कलर का टी शर्ट और ब्लैक कलर का ट्राउजर पहना हुआ है और अपने हाथों में घड़ी पहना हुआ है।

एक लोहा भी लगाया हुआ है जो की ब्लैक कलर का है।

नीचे में ब्लैक कलर का टाइल्स लगा हुआ है।

करकट के नीचे में ट्रैक्टर का दो तीन डाला भी रखा हुआ है।

इस फैक्ट्री के चारों तरफ में दीवार लगे हुए।

फैक्ट्री में बहुत सारे चावल का ढेर गांजा हुआ है।

पलस्तरा को करने में ढेर सारे लोग मेहनत कर रहे हैं।

दुकान के बाहर में ढेर सारा गेंदे के फूल और कुछ बैलून से दुकान को सजाया गया है।

ग्राउंड में ढेर सारा घास लगा हुआ है।